एक बहुत बड़ा घर है घर के बाहर बहुत सारा गार्डन है और इसके आस-पास एक छोटा-सा ट्रैन है जो की बहुत ही अच्छा है और ट्रैन का कलर ब्लू और पिंक है जो की बहुत अच्छा लग रहा है।

और उसके रूम में बहुत ही ज्यादा सजा हुआ समान है जो की बहुत अच्छा लग रहा है सजा हुआ समान बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रूम बहुत ही अच्छा है।

शाम का टाइम है।

गाड़ियाँ चल रही जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में उसके घर बगल में घर जो है बहुत ही ज्यादा खूबसुरत है बहुत ही ज्यादा --